फल एवम सब्जियों की दुकानें है तरबूज है अनानास है।

बकरे-बकरियाँ है खाने के लिए उनका सामान हैं।

पौधे है कमल फूल के पहाड़ी है तालाब है रोड है घास है पेड़-पौधे हैं।